इस फोटो में मुझे कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे खिलौनो का शहर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है।